और वो बहुत अच्छा सुन्दर है और मुर्तियाँ है सीड़ी है बहुत अच्छा सुन्दर है।

एक अच्छा है सुंदर है कार है और और बहुत अच्छे सुन्दर और घर है बहुत अच्छा सुन्दर अर कार है बहुत अच्छा सुंदर--

यह एक यह एक बाजार जाने वाला गेट है बहुत अच्छा है सुंदर है और उसमें भारत काभारत का झंडा लगा बहुत अच्छा है सुंदर हैं।

बहुत अच्छा है सुन्दर है बड़ा भ बड़ा कॉलेज है बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ रहे है पेड़ - पौधे है बहुत अच्छे है सुन्दर है और घर हैं।

और बहुत दरवाजा लगा है बहुत सुंदर और यहाँ पर पेड़ -पौधे हैं बहुत सुंदर हैं।